नमस्कार अरैज़सारणियोंके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
अरैज़ प्रयोगकर्ता को डेटा के एक से अधिक हिस्से को वेरिएबल के अन्दर रखने की अनुमति देता है
उदाहरणस्वरूप वेरिएबल डेज को एक अरैकह सकते हैं
कोष्ठकों की एक जोड़ी के भीतर हम एक से अधिक मान रखने जा रहे हैं
अतः मैं इसके लिए 5 मानों को चुनूँगा और सप्ताह का हर दिन इनमें से प्रत्येक के भीतर होगा
मेरे पास मंडे सोमवार Tuesdayमंगलवार Wednesdayबुधवार Thursdayगुरूवार और फ्रिडे शुक्रवार केवल सप्ताह के 5 दिन होंगे जो हमें सेव करता है
उदाहरणस्वरूप मानिए कि पहला दिन सोमवार है दूसरा दिन मंगलवार है और इसी तरह
आशा है कि आपको समझ में आया होगा
एक वेरिएबल को इसके अंदर डेटा के एक से अधिक मानों का प्रयोग करने के लिए यह बहुत सरल और अधिक प्रभावशाली तरीका है
कृपया ध्यान दें यह संख्याएँ भी हो सकती हैं या कोई भी डेटा जिसे आपने उनके अंदर रखना आवश्यक समझा
अब अपनी अरैको सामने लाने के लिए मैं कहने जा रहा हूँ एचो डेज
अबआप पाते हैं कि यह काम नहीं करता है
यह होता है जब हम अपना पेज खोलते हैं
हमारे सामने केवल अराय एको हुआ है
अब अराय कहीं भी यहाँ भीतर नहीं है
अतःPHP ने क्या किया हमारे सामने तथ्य लाया कि हमारे पास एक अरै है
अबएक अरै के भीतर एक विशिष्ट एलीमेंट को लाने के लिए आप चाहें तो इसे एलीमेंट कह सकते हैं कुछ स्थानों पर वे इसे इद टैग्स या एक अरैके एलीमेंट्स कहते हैं
हम वर्गाकार कोष्ठकों का उपयोग करने जा रहे हैं और हम अरैके भीतर एलीमेंट के स्थान को कहेंगे
अतः आप इसे एक दो तीन चार पाँच सोच सकते हैं
हालाँकि संख्यांकन प्रणाली की वजह से मानक संख्यांकन प्रणाली की शुरुआत हम शून्य एक दो तीन चार से कर रहे हैं
अतः उदाहरणस्वरूप मैं सोमवार को सामने लाना चाहता हूँ जो कि शून्य होगाअतः यहाँ पर आप शून्य रखिये और आपके सामने सोमवार आ गया
उसी प्रकार से एक मंगलवार होगा और चार जो कि अरैमें अंतिम एलीमेंट हैशुक्रवार होगा
ठीक है अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे विभिन्न तरीकों से अरैमें मानों को निर्धारित करते हैं
अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो मुझे प्रारंभ से शुरू करने दीजिये
मैं एक अरैबनाने जा रहा हूँलेकिन मैं इसे विशेष रूप से बनाने जा रहा हूँ
अतः डेज ज़ेरो इक्वल्स Mondayशून्य दिन सोमवार के बराबर है डेज ओने इक्वल्स ट्यूसडे एक दिन मंगलवार के बराबर है
अब हो सकता है आप सोचें इसका क्या महत्व है160
मेरा मतलब मैं वास्तव में यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले जो बोला था उसे बनाने में थोड़ी परेशानी होगी
मेरा मतलब है कि मैं कह सकता हूँ डे 1 इक्वल्स आप जानते हैं और डे 2 इक्वल्स और आप इसे इसी प्रकार से कर सकते हैं
फिर भी हम यहाँ अभी भी जो कर रहे हैं उसे एक अरैके अन्दर रख रहे हैं
अतः हो सकता है कि इसके पास अभी भी वही संरचना हो लेकिन हम इसे अलग तरीके से निर्धारित कर रहे हैं
अतः आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं
मुझे इसे हटाना है
मैं हमेशा यह इस तरह से करना पसंद करता हूँ
मैं यह अधिक सरल लगता है और बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे नीचे इस तरह से ला सकते हैं
फिर भी यदि आप इसे देखने के लिए वरीयता देते हैं मेरा मतलब यदि मैं माफ़ कीजिये मैं इसे फिर से करूँगा
यदि मैं इसे अभी सेव करता हूँ रिफ्रेश करें कुछ भी नहीं बदला
यहाँ पर कोई गलती नहीं है हमें अभी भी वही संरचना मिली है हमने इसे केवल लाइनों पर नीचे उतार दिया है
वहाँ पर आपके फंक्शन के अंत में लाइन समापक और न कि हर एक लाइन के अंत में अतः इससे भ्रमित न हों
ठीक है तो चलिए अब इस पर वापस जाते हैं
ठीक है तो यह बेसिक अरै है और दो अलग तरीकों से इसके लिए कैसे मानों को बनायें और कैसे इसके लिए मानों को कहें
अतः उदाहरणस्वरूप यदि मैं कह रहा था एचो तोड़े इस ऊप्स माफ किजिए डेज और फिर मैं कह सकता हूँ शून्य
अब आप पहले ही देख सकते हैं कि मैंने इसे विषय में चिन्हांकित किया है मैंने इसे हरे रंग से चिन्हांकित किया है
अब यदि आप इसे रिफ्रेश करें आप देखेंगे कि यह सोमवार है
अब आप भ्रमित न होंमैं आपको विषय के उपयोग की सलाह देता हूँ
फिर भीयह मानक तरीका नहीं है कि कोन्टक्ट कोडिंग को पहचाने
इसे जो दिखने में बेहतर बनाएगा आप उसे देखेंगे जब हम इसे यहाँ नीचे लिखेंगे हम कह सकते हैं एचो डेज और ज़ेरो आप देख सकते हैं कि कैसे एक पूर्णांक एक संख्या को दर्शाने के लिए वह लाल रंग में है
जिस तरह से यह आप लिखना चाहते हैं वह उस तरह है और हम देख सकते हैं कि यह सही है
परन्तु आप इसे सामने लाने के लिए अपनी स्ट्रिंग में एक अरै सम्मिलित कर सकते हैं
फिर भी मैं एसोसिएटिव अरैज़ पर जा रहा हूँ जहाँ हम एक तरह से इद टैग्स नियुक्त करने जा रहे हैं जहाँ हम हर एक के लिए एक मान रख सकते हैं मैं पहचान के प्रत्येक प्रकार के लिए उस मान का कैसे विवरण कर सकता हूँ
यदि आप इसका पालन नहीं करते तो यह तरीका है मैं इसे बनाने जा रहा हूँ
मैं कहने जा रहा हूँ एजेस इक्वल्स अरै अब भीतर मैं कहने जा रहा हूँ एलेक्स
अब बजाय आगे बढ़ने के और कहना बिली और फिर काइल जो तीन नाम मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं बोलने जा रहा हूँ उन्नीसचौदह और अट्ठारह
मूलरूप से इक्वल्स बराबर और ग्रेटर थान से अधिक चिह्नजीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं
अब यह क्या किया है कि हमारे अरै एलीमेंट्स के बजाय जैसे यह शून्य से बुलाया जा रहा है यह एक से बुलाया जा रहा है यह दो से बुलाया जा रहा है
यह अब एलेक्स कहा जाता है यह बिली कहा जाता है और यह काइल कहा जाता है किन्तु इनके मान चौदह उन्नीस और अट्ठारह हैं
अतः वास्तव में यह उसी का तरह लिखने के ही समान होगा
चलिए इसे हटाते हैं और इसे शून्यएक और दो कहते हैं
और इसे थोडा अधिक उपयोगी और याद रखने के लिए थोड़ा सरल कहने के लिए थोड़ा सरल बनाने के लिए अब हम कह सकते हैं एचो आउट एजेस एलेक्स इस तरह
अतःयह हमारे सामने उन्नीस देगा जैसे ही हमने रिफ्रेश किया और यहाँ देखिये उन्नीस
बिलकुल यही होगा यदि आप इस को बिली और काइल के साथ करें
तो जब आप प्रोग्राम के आधे रास्ते में हैं और बजाय कहने के कि ओह160
मुझे फिर से सबसे ऊपर जाना होगा और प्रत्येक पंक्ति से गिनूँ और बोलूँ क्या यह शून्य एक दो या तीन हैमैं याद नहीं कर सकता160
यह करने में काफी सरल है
इसे करने का दूसरा उपयोगी तरीका है यदि मुझे कहना होता कि अराय ओने इस इक्वल टो एलेक्स अरै एक एलेक्स के बराबर है और त्वो इस इक्वल टो बिली दो बिली के बराबर है
हम शून्य में और फिर एक से शुरू नहीं कर रहे हैं
हम एक और दो से शुरू कर रहे हैं ताकि इसे याद रखने में आसानी हो
अतः अब हम कह सकते हैं एचो एजेस ओने जो एलेक्स के रूप में सामने आता है
हम इसके लिए शून्य नहीं इस्तेमाल कर रहे हैंयह काफी उपयोगी है प्रोग्राम करने के लिए नाकि शून्य एक दो कहने के लिए
इस पर कोशिश कीजिए इस पर काम कीजिए जानिये आपके लिए सबसे सरल क्या है
किन्तु मेरे ख्याल से यह पूर्ण व्यर्थ है क्योंकि मैं शून्य एक दो का प्रयोग करना चाह रहा हूँ
लेकिन अगर आप इसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले किया है या इस तरह से या किसी भी डाटा प्रकार को एक स्ट्रिंग मान निर्धारित करके फिर इसे करने का यह तरीका है
ठीक है यह बुनियादी अरैजहै मेरे पास बहु आयामी अरैज पर दूसरा ट्यूटोरियल है
यह एक अलग ट्यूटोरियल है
कृपया इसको देखें
इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही है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
धन्यवाद